आंटी पूजा कर रहे हैं उनके घर में | उनलोग लगा के पूजा कर रहे हैं और बच्चा पूरा परेशान है।

इस चित्र मे ये नजर आ रहा है की एक कटिंग शॉप है वो कटिंग शॉप का नाम--

फ़्रेंड्स और वो शॉप के बाहर एक इंसान टकला इंसान मास्क लगाले के तेरा है।

और ये बहुत पुरानी मंदिर दिख रही है और कलर इसका ऑरेंज ग्रीन है।

रोड के ऊपर एक ऑटो एक गाड़ी जा रही है और कुछ लोग तेरे हुए एक पुलिस अंकल और एक गाड़ी पे जा रेह है|

इस चित्र में देख रहे है कि दो लोग स्टेज पे ठहर के गाना गा रही है और ये लोग प्रोग्राम के अंदर वो कर रहे है पार्टिसिपेंट और वहाँ पे एक बॉक्स लगेवा है।

और लोग भी देखने आये हैं | इ इ इसको और पीछे भी बैकग्राउंड में लाइटा वगेरा भी है और इनु डांस कर रही है स्टेज पे ।

इस चित्र मे दिख रहा है की बड़ा सा पहाड़ी है और पहाड़ी के नीचे पानी है और पानी के अंदर शिप पर और एक इंसान फोटो खींच रहा है बन्दे के ऊपर बैठ के और दो तीन लोग पानी मे चर रहे हैं ।